स्कूल का भवन भी दिखाई दे रहा है साथ ही छात्राओं ने पेंटिंग हाथ में लिए हुए है।

हमें एक मंच दिखाई दे रहा है साथ ही हमें मंच पर एक सोफा रखा हुआ नजर आ रहा है।

रंग की बैठने की व्यवस्था भी नजर आ रही है और हमें हरा-भरा --

और हमें यहाँ निर्माण कार्य के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकान नजर आ रही है साथ ही हमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

हमें एक दुकान दिखाई दे रही है साथ ही हमें एक बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है जिसपर गणपती होटल --

हमें एक अ हॉल नजर आ रहा है जिसमे बड़ी भव्य सजावट की गई है साथ ही दो बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे है|

हमें एक बड़ा भव्य और दिव्य स सजावट से परिपूर्ण एक मंच नजर आ रहा है|

पेड़ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे है कुछ पेड़ बहुत बड़े और घने दिख रहे है।